यहाँ कोई मॉल का पिक्चर है। जहाँ की बहुत सारे कपड़े बिक रहे है रंग बिरंगे कपड़े हैं।

इस पत्थर मै लगता है बहुत पुराना पुराना पत्थर है लगता है कोई एंटीक मंदिर है और पता नहीं क्या है।

पिक्चर मे लग रहा हे कोई गार्डनिंग कर रहा है बहुत सारे हरे पत्ते है जेसे कोई शो प्लान्ट हो इस शो प्लान्ट का बहुत सारा इस्तेमाल होता है ।

यहा कोई जनरल स्टोर है यहा रिचार्ज होता है ओर सिम कार्ड स्टोर है यहा आप सिम निकलवा सकते है।